वेलकम रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ खाने के बोर्ड में बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा कॉरिडोर सा बना हुआ है और यहाँ पे ब्लैक कलर की चेयर्स रखी हुई है।

और बड़े से पोल लग रहे हैं दो बड़े-बड़े और ऊपर से बहुत सारी वायरिंग जा रही है एक झंडा लगा हुआ है और पं घंबे के ऊपर लाइटें लगी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है और इसमें वाइट कलर का पेंट हो रहा है खिड़कियाँ बनी हुई हैं जो पुराने जमाने में बनती थीं।

व्हाइट कलर के और पीछे घर बने हुए हैं और बीच से रोड जा रहा है।

ये एक खण्डर सा बना हुआ है जो बहोत पुराना है और यहां पे टूटी फूटी दिवाले बनी हुई है।

किसी की मशीन लगी हुई है ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई है नीचे साइड यह--

ये एक किचन सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है हम और यहाँ पे नीचे एक अअ--

पीछे एक बाइक खड़ी हुई है एक आदमी साइकिल से जा रहा है और एक आदमी बाइक से--

पीछे खिड़की दिख रही है ऊपर लाइटें लगी हुई है एल_ई_डी की।

ये बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने गोल्डन जिन्होंने सिंदूरी रंग के कपड़े पहने हुए हैं और ओन हेड डाउन करे हुए हैं।

एक साइड शटर लगी हुई दोनों साइड शटर लगी हुए हैं और एक साइड कांच का गेट लगा हुआ है जो ए_टी_एम हैं बाहर बहोत सारी बाइकें खड़ी हुई है और आदमी लोग खड़े हुए--

यह और बहुत सुंदर झूमर बना हुआ है ऊपर एल_ई_डी लाइट लगी हुई है और साइड में सोफा--

टाइम में एल_जी की मशीन लगी हुई है पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और दिन का टाइम है --

ये दिन का टाइम है और बहुत बड़ा घर अ घर बना हुआ है जो यल्लो और ब्लू कलर के पेंट से पेंट हो रखा है सर्किल सा बना हुआ है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ --

और लाइटें लगी हुई हैं दो आदमी खड़े हुए हैं ये दोनों बैग टांगे हुए हैं और एक अंदर बैठा हुआ है और सामने तराजू रखा हुआ है।